स्कूल में जो है वो फंक्शन हो रहा है काफी बच्चे जो है गर्ल्स है यहां पे बहोत सारी गर्ल्स है।

और इसमें पीछे जो है ग्रीन ग्रास के पौधे भी हैं।

पॉप आर्टिपल दिए हुए देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है ऊपर लाइटनिंग हुई है काफी अच्छी जो डेकोरेट किया हुआ मैंने क्लब को--

अब डालना है वो गर्ग इंस्ट्रूमेंट हुआ है और गाना गाने के लिए आगे जो है वो माइक रखा हुआ है।

एक वाइट कलर के फ्लावर है जिनको अच्छे से सील करके रखा है एक येलो कलर के फ्लावर्स है।

यहां पे किसी के घर की--

वो लोग लकड़ी के बोर्ड्स को उठा रहे है और वो लोग--

चेयर्ज हैं और बैठने के लिए सोफा टेबल रखा हुआ है।

के साथ डी_जे भी रखे हुए हैं स्टेज शो है वो ब्लैक कलर के--

फ्लावर्स रखे हुए यहां पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स रखे हुए शॉप पे--

उसने अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है और एड्रेस भी बोर्ड पे।